दरवाजा क्लिनिक का खुला हुआ है ऊपर एक ब्लॉक दिख रही है।

यहां से बिजली का खंबा है और यहां पर बहोत सारे प्लांट्स नजर आ रहे हैं।

इसमें एक लकड़ी ठोकी गई है।

अ बैंक सामने है और ये यहां पे शॉप्स जो बंद है।

यहाँ से यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया है और यहां से यूनियन बैंक है।

नक्लेसेस है और यहां पे भगवान की फोटो लगी हुई हैं।

यह यहां पर कोई समारोह चल रहा है।

अह यहां पे अम पेंट येलो कलर किया गया है।

का डेकोरेशन किया जा रहा है अ यहां पे एक स्कूटी है।

इसके पीछे भी कोई एक बाइक है और वहां पे बहुत सारी शॉप्स ओपन हैं।

यहां पे यहां सीढ़ियों पे दो बातक हैं और यहां पे बहोत सारी ग्रीन प्लांट्स है।

और रोड के पार सामने शॉप है जिस पे एस_आर मोटर्स लिखा हुआ है।

यहां पे बोर्ड लगा हुआ है ड्रीम्स कार जा--

बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और यहां पे एक झूले पे घोड़ा बंधा हुआ है।

कैफे हैं और यहां पे कॉफ़ी और आइसक्रीम खाने आते हैं।

इनके सामने डेस्कटॉप है और ये अ चला रहे हैं।

और वहां पे एक वार्डरोब है और वहां पे कर्टनस से लगे हुए --

ये एक बच्चा है ये पेड़ के बीच खड़ा हुआ है।

यह एक मंदिर है और यहां पे लोग पूजा करने आते हैं।

ये लोग कोई काम कर रहे हैं और इनके हाथ में हथौड़े हैं।

यहां पे एक साइड से खिड़कियां खुली है तो दूसरी साइड से बंद है।

ये इसमें दो एक बच्चा है और यहां से एक आदमी काम कर रहा है।

इसमें पिंक परदे लगे हुए हैं और यहां पे बलूंस लगे हुए हैं।

यहां पे और दीवार पर मैरून कलर किया गया है।

एक बोर्ड लगा हुआ है चार एक टेबल है।